काफी अच्छा दिखाई दे रहा है हॉल का सीन --

और ऊपर के माहले भी दिखाई दिए हैं कि ये दो फ्लोर का हो सकता है काफी नीट एंड क्लीन --

और पेन वगैरा है ग्लू वगैरा है बलूंस है।

ये एक होटल के इमेज है होटल के बाहर जिस तरीके से स्विमिंग पूल रहता है--

की ए_टी_एम में एक बार लोग जाते हैं।